बैलून का कलर व्हाइट एंड रेड है और पर्दों का कलर व्हाइट एंड रेड है।

यह एक छोटे पेड़ पौधे का दृश्य है तथा यहां पे पेड़ पौधे का कलर है ग्रीन ।

यहां पे उसका शट का कलर है पर्पल और वाइट कलर का है।

एक व्यक्ति जारा बाइक से जो ब्लू कलर का बैग पहने हुआ है और वाइट कलर का शर्ट तथा यहां पे एक व्यक्ति चलते हुए दिखाई दे रहा है।

यह एक सब्जी दुकान का दृश्य है तथा यहां पे बहुत प्रकार के सब्जी रखे हैं।

ट्री का कलर ब्लैक और ब्राउन है और ओ भी लोहे के मदद से बनाया गया है।

यह एक मंदिर का दृश्य है तथा यहां पे बहुत सारी छोटे छोटे मंदिर भी लगे हैं जो मंदिर के कलर है पीला और हल्का रेड ।

तथा बादल का कलर है व्हाइट एंड आसमानी।

यह एक साइकिल दुकान के अंदर का दृश्य है तथा यहां पे बहुत सारी साइकिल लगे हुए हैं।

दो ब्लैक कलर के और आसमानी कलर के है तथा यहां पे छोटे बच्चों से लेके और बड़े बच्चे का सबका है।

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं एक महिला ऊपर चढ़ती सीढ़ी के दिखाई दे रही है।

यह एक छोटे पेड़ पौधे का दृश्य है तथा यहां पे बहुत प्रकार के पेड़ पौधे रखे गए हैं जैसे उसका कलर यलो गुलाबी रेड और भी ग्रीन प्रकार के हैं।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

तथा सामने में एक लोहे के मनुष्य और शीशे की मदद से गेट बनाए गए हैं।

यह एक आइसक्रीम दुकान का दृश्य है तथा यहां पे एक रोलेक्स लिखा गया ऊपर में जो गुलाबी एंड ब्लू कलर में तथा यहां पर बहुत सारे लाइट जलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पे शीशे की मदद से गेट बनाए गया है जिसके ऊपर एक हैंडल भी लगा है जो लोहे की मदद बना है।

तथा पीछे बहुत सारे बिल्डिंग में बांस लगाए गए हैं जो ब्राउन कलर के है।